बहोत ही बड़ा लग रहा है यह देखने में बहोत ही बड़ा और बेकार एरिया है।

और बहोत सारे गुब्बारों की ये लाइब्रेरी बहोत बड़ी है।

बड़ी सी एक यहां एल्बम रखी है।

यहां पर बहोत सारे पंखे लगे हुए हैं।

ये एक बहुत बड़ा चर्च है यहां बड़े बड़े बैलून से सजावट की गई है।

चारो तरफ बड़ी बड़ी मशीने है बड़ा सा कारखाना है और मशीने नीले रंग की है।

बहुत साफ सफाई है और लाइटें जली है।

चारों तरफ हरियाली है बड़े बड़े पहाड़ है ये--

पिंक कलर में बहोत ही सुंदर लग रहा है।